यहां एक मंदिर बना हुआ जिसके पास में एक झंडा संगा हुआ है और आस पास में कुछ घर भी दिखाई दे रहें --

यह एक शॉप है इसके अंदर कुछ ब बंदे बैठे हुए हैं जिन्हों के सिर पर साफे हैं और पीछे --

बहुत सारे कांच लगे हुए हैं जिनके ऊपर एक लाइट लगी हुई है जोकि जल रही है।

यह एक लाइब्रेरी है इसके अंदर बहुत सारी कुर्सियां और टेबलें रखी हुईं है जिनके अंदर एक स्विच होल्डर है और बहुत सारी लाइटें जग रही है और आसपास में --

सामान रखा हुआ है जैसे कि ताला हो गया और पास में एक लकड़ी के अलमारी बनी हुई है जो कि बंद है और उसके अंदर लाइटें जल रही है और पंखा चल रहा है।

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं जोकि हरे भरे हैं और इनकी पत्तियां भी दिखाई दे रही है और आस --

शॉप है जिसके बाहर भारत मिल्स लिखा हुआ है और इसके बाहर एक बाइक खड़ी दिखाई दे रही है और आसपास में कुछ दुकानें भी दिखाई दे रही हैं।

और एक टैक्सी खड़ी है और नीला आसमान दिखाई दे रहा है और पास में एक दुकान दिखाई दे रहे इसके अंदर का --

आसमान साफ दिखाई दे रहा है और इसके पास में बहुत सारे ऊंची ऊंची बिल्डिंगे बनी हुई है।

यह एक मोबाइल की शॉप है जिसके आगे एस कुमार कलेक्शन लिखा हुआ है और नीचे आइडिया और जिओ का पोस्टर लगा हुआ है।

यह एक कैफे है जिसके अंदर बहुत सारे नमकीन बर्गर और सैंडविच वगैरा मिलते हैं इसके बाद एक बाइक खड़ी दिखाई दे रही है और कुछ --